भरा हुआ है जल जाम लगा हुआ है बृक्ष का भी एक टूटा हुआ दुकान भी दिखाई दे रहा है|

और एक बहुत बड़ा टावर दिखाई दे रहा है शाम का टाइम है।